पीछे बड़ा सा एक गेट है जो हॉल के एंट्री के लिए रखा गया है इस गेट के सामने से रेड और क्रीम कलर के मेट बिछी हुई नज़र रही है एक चेयर पर एक लड़का बैठकर फोटो खिंचवा रहा है।

यहां पर एक बड़े से गार्डन के बीचों-बीच एक लोहे का झूला लगा हुआ नजर आ रहा है जिसके ऊपर दो लड़के चढ़े हुए नजर आ रहे हैं।

एक साइड पर एक रस्सी बंधी हुई है जिसके ऊपर कुछ कपड़े सूखते दिखाई दे रहे है सामने एक गार्डन जिसमे घास उगी हुई नजर आ रही है गार्डन पर भी एक रस्सी मे कपड़े सुख रहे है।

यहाँ पर किसी जगह का छत दिखाई दे रहा है यहां पर कई सारे लड़के ही पोज़ पर बैठे हुए दिखाई दे रहे है ये किसी तरह का योगा आसन करते हुए नज़र आ रहे है इन सब ने मेट बिछा रखी है और मेट के ऊपर बेठ के ये योगा आसन करते हुए दिखाई दे रहे है।

यंहा पर किसी जगह का एक स्वागत द्वार दिखाई दे रहा है जंहा पर डिवाईडर लगा हुआ है जो की पिंक कलर का है इसका स्वागत द्वार भी पिंक कलर का दिखाई दे रहा है बगल में चबूतरे के ऊपर एक और छोटी बिल्डिंग है जिसके ऊपर एक लाल कलर का झंडा लगा हुआ नजर आ रहा है।

गेट के पास एक आदमी जाता हुआ दिखाई दे रहा है अंदर की तरफ एक और गेट दिखाई दे रहा है और कुछ सीढ़ियां भी बनी हुई नजर आ रही है।

और एक बड़ी सी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है जिसके सामने दोनों तरफ कुछ छोटे-छोटे गार्डन बने हुए हैं इन गार्डन पर कुछ लोग पौधे लगाते हुए दिखाई दे रहें हैं।

वॉटरफाल का पानी काफी साफ-सुथरा नजर आ रहा है और ये लोग उसको नहाते हुए इसका आनंद लेते हुए नजर आ रहे है बगल में कुछ और पत्थर दिखाई दे रहे है।